बाइक साइकिल ले के कुछ आदमी लोग आया है पास में कुछ टीना का सेट दे के दुकान है।

पार्क में लाफिंग करने का कुछ सामान हुआ है इसके पीछे वहां पे वर्क लिखा हुआ है।

व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसका गार्ड वाला ऑरेंज कलर का है उसका एक गेट लोहे का वाइट कलर का--

बड़ा नाजदे के पास में एक हरा कलर का अ गांछ है।

पेड़ हैं इसमें बड़हर लाइट का बोर्ड है वहां पे टेलिकॉम का टॉवर हैं।

यहां पे कुछ बास्केट में येलो कलर का बास्केट ऊपर से नीचे तक सजा के रखा है दुकान अभी खुला है।

यहां पे ऊंचे आड़ में प्लास्टिक का व्हाइट कलर का चेयर में बैठा हुआ है मोबाइल टिप रहा है।

अह वाल में बहुत सारे ड्रेस वगैरह साड़ी वगैरह लटका के रखा है रैक में बहुत सारा साड़ी सजा के रखा हुआ हैं।

ये एक बस स्टैंड है पब्लिक बस स्टैंड यहां पे बहुत सारे बस खड़ी हैं मैं अभी तीनों बस देख रहा हूं यहां पे सामने में एक बस का गेट दिखाई दे रहा है।

ए जहां पे गेट खुला है वहां पे एक चेयर में एक जन बैठा हुआ है अंदर में पूरा लाइट जल के रखा हुआ है।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

यहां पे एक बिल्डिंग के बीच में एक मार्ट दिखाई दे रहा है जो खेलने का मार्ट है पिच करके रखा है।

वहां पर एक कुछ बॉल जो कोटिंग बॉल है खेलने का यहां पे स्टैंड है पास में बड़ा बड़ा पेड़ है।

ये एक क्लास रूम है जहां पे बहोत सारा बैंच वगैरा रखा हुआ है का।

पांच आदमी मीटिंग कर रहा हैं यहां पे एक आदमी बंद खड़ा हो के प्रोजेक्टर में कुछ समझ रहा है।